और सामने फ्लोर का कलर हमें--

सामने की ओर व्हाइट कलर की चेयर रखी गई--

जिसमें की कुछ शूज दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

जीसकी छत पर ग्रीन कलर दिखा--

कुछ रेशे दिख रहे हैं छोटे छोटे--

पीछे की ओर बड़ा सा टावर दिख रहा है।

सामने ही हमें पेड़ दिख रहे हैं ग्रीन कलर के--

और कुछ व्हाइट कलर के गमले हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर हमें दिख रहा है आसमान का कलर ब्लू है।

ऊपर की ओर हमें ब्लैक कलर दि--

ग्राउंड जिसमें की लोग चल रहे हैं।

सामने हमें बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।